वह एक ट्रक है। ऐसा लग रहा है जेसे कि वह कोई वाटर टैंक हो और उधर कोई लोग नहीं हैं।

ये शायद कोई रेस्ट्रोरेंट हो और यहाँ पे मेन्यू कार्ड इनका दिख रहा है। कोल्ड कॉफ़ी ऐसे सब करके और इनके टेबल चेयर काले और नीले रंग के हैं और ग्रास में जो लि --

ये एक रेस्ट्रोरेंट का व्यू दिख रहा हे और इनका पूरा ऊडन ही पूरा इंटीरियर्स दिखाई दे रही हे और ऊपर भी लाईटस अच्छी हे और साईड में पॉट्स का कुछ डेकोरेशन किया गया हे और विन्डोस है एक फेन रखा हुआ है यहाँ पर --

लिखा भी है ओम कैफ़ रेनबो कलर ऐसे कुछ है। आ कॉफ़ी हार्ट टी करके पूरा हर्ट्स करके डेकोरेशन है।